यहा पर एक बड़ा सा जिम है और यहा पर बड़े बड़े आईने लगे हुए होनी यहा पर बहुत सारी मसीने रखी हुई है डम्ब्बेल्स रखे हुए है और पुसउप कर रहे है कुछ लोग एक्सर्साइज़ कर रहे है यहाँ पर --

यहाँ आप देख सकते है जिम है यहा पर बहुत सारे मशीने रखी हुई है डंबल रखे हुए है।